गुंबद में तीन दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो छोटे और एक बड़ा है ऊपर गुंबद की एक लंबी सी एक सुरंग भी दिखाई दे रही है और आकाश का रंग सफ़ेद है।

वहां पर कुछ हर व सफेद कलर दिखाईं दे रहा है आसमान का रंग भी सफ़ेद है सीधे हाथ में कुछ चट्टाने हैं जिसके ऊपर कुछ पेड़-पौधे है सीधे हाथ में भी कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पानी के नीचे भी पानी के अंदर भी बोहोत सारी चट्टाने छोटी और बड़ी दिख रही है।

हरे नीले लाल व सफेद रंग दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के बाहर कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका प्रतिबिम्ब भी दिख रहा है आकाश का कलर नीला है व इसमे कुछ खिड़कियां भी बनी हुई हैं।